यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है और अ एक ट ऊपर एक टंकी रखी हुई है।

यह सोने यह सोने की तरह चमक रहा है।

यहाँ पर एक विशाल सा भवन दिखाई दे रहा है उसके पीछे छोटे-छोटे घर है पेड़ --

यहाँ यहाँ पर एक स्कूटी और एक बाइक रखी हुई है एक मरू-अ एक कार रखी हुई है।

यहाँ पर बाइक और स्कूटी दिखाई दे रही हैं केनरा बैंक के गेट खुले हुए हैं।

यहाँ-हाँ यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है जिसमे अम-म-म खरगोश जैसी शकल लगी हुई है और --